लोहा है बहुत खंबे लगे हुए हैं तार उर लाइट व्हाइट है बहुत --

ऊपर पहाड़ है ऊपर पहाड़ है बगल में चट्टान है।